इसमें उनका उस्ताद भी बैठा हुआ है जिसके पीछे एक बोर्ड भी नीले कलर का लगा हुआ है जो इनको प्रैक्टिस करवा रहा है।

यहां पे एक हॉल बना हुआ है कॉलेज का या स्कूल का है जिसमें काफी सारी बिल्डिंगे बनी हुईं हैं रेड कलर की बिल्डिंग है।

इसमें काफी सारे बच्चे लेटे हुए हैं और तीन से चार उनके प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं उनको वो भी खड़े हुए हैं।

और उनके पीछे काफी सारे बच्चे खड़े हुए हैं जिन्होंने सफेद कलर के सूट पहने हुए हैं और सर पे --